सजावट सरल है और माहौल आरामदायक दिखता है।

ये एक गैरेज जैसा दिखता है।

एक आदमी भी एक कार के पास काम कर रहा है।

यह जगह कारों की मरमत का है।

कमरे की दीवारों लकड़ी की तरह दिखने वाली है।

दोनों बिस्तर पर चादर और तकिए हैं।

कमरे में एक सोफा और कुछ तकिए कुर्सियां भी हैं जो बैठने के लिए हैं।

ये तस्वीर नेताजी विद्या पीठ नामक स्कूल के प्रवेश द्वारा की है।

स्कूल के आसपास हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है।

यह एक कमरे का चित्र है।

आसमान साफ है और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है जिसमें कुछ के पत्ते लाल है।

दूर पर कुछ घर या इमारत दिखाई दे रही है शायद यह चाय बागान के कर्मचारियों के लिए आवास या चाय की फैक्ट्री हो सकती है।

उसके सामने दो मॉनिटर है जिन पर अलग अलग चीजों दिख रही है।

कैमरे में एक रिंग लाइट एक सी_पी_यू और कुछ अन्य सामान भी है।

ऐसा लग रहा हैं कि वो किसी ऑफिस या गेमिंग सेट अप में काम कर रहा हैं।

मॉनिटर पर लोगों के निशान बने हुए है।

यह दीवार पर बहुत सारे चप्पल और सैंडल हैं जो अलग अलग रंग और डिजाइन के हैं।

ये तस्वीर रात के समय की है।

बीच में एक गोल मंडप है जिसके अंदर कुर्सियां और एक टेबल है।

मंडप के चारों ओर रोशनी है और रास्ते भी है।

यह तस्वीर कीड़रपोर स्विमिंग क्लब की है।

दुकान में कई तरह के सामान रखे हुए हैं जैसे बिस्किट नमकीन और अन्य खाने पीने के चीज।

दुकान में रौशनी है लेकिन यह बहुत तेज नहीं।

एक डाइट और न्यूट्रिशन का क्लीनिक है जिसके बोर्ड में लिखा है बिंग वेल डाइट क्लीन है यहां वेइट लूज गेन डायबिटीज थायराइड के लिए संपर्क करे।

ये तस्वीर किसी दुकान या घर की रसोई की हो सकती हैं।

मौसम बदलाव से भरा है शायद बारिश होने वाली है।

सामने पहाड़ दिख रहा है और कुछ प्रार्थना झंडो हवा में लहरा रहे हैं।

एक महिला लाल साड़ी पहने हुए अ बड़ी मूर्ति के सामने बैठी है शायद प्रार्थना कर रही है।

यह तस्वीर एक शादी समारोह की है जो रात में हो रहा है।

दो आदमी ई रिक्शा के दोनों तरफ खड़े हैं।

कुछ लोगों बैठे हैं और कुछ खड़े हैं।

यह तस्वीर एक बांध की है जिसमें पानी भरा भरा रहा है।

एक ऊंचा टावर भी है शायद किसी राइड का हिस्सा है।

सैलून में एक दर्पण और कुछ कुर्सियां हैं।

उसके पीछे एक नदी या झील दिखाई दे रही है।

उसके हाथ में घड़ी और पैरों पे लाल चप्पल पहनी है।